सामने बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रहीं हैं जो कि सफेद रंग से आसमानी गुलाबी रंग से पुती हुई है।

यहाँ पे कुछ पूजा हो रही है जो पता नहीं क्या पूजा हो रही है बीच में कुछ बहुत से फूल फूल से सजाये हुए रखे हैं चारों तरफ लड़कियाँ है।